इस फोटो में हमें मास्क पहने हुए एक औरतें दिखाई दे रही है।

पेन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पैकेट में रखे गए हैं।

ये फोटो किसी पैलेस की लग रही है।

बेड भी दिखाई दे रहा है जो कि बहोत पुराना है।

जहां पे हमे कुछ इलेक्ट्रिक बाइक दिख रहे है।

इस फोटो में हमें एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

दुकान के साथ ही सेल्फी दिखाई दे रहा--

यहां पर हमें कुछ टेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे हमें एक ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

और यहां पे हमें एक लाल रंग का बोट दिखाई दे रहा हैं।

हमें यहां पे कुछ डमीज दिख रहे हैं जिन के सूट पेहनाएं हुए हैं।

हमें यहां पे कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे--

जिसमें की केक बनाए रखे हुएं हैं जे किसी बेकरी की दुकान लग रहीं हैं।

ये कोई बच्चों का खेलने का पार्क है।